एवं यहां पे कुछ व्यक्ति खड़े हैं एवं एक व्यक्ति बैठे हुए हैं।

फोनपे का लोगो लगा हुआ है एवं एक स्कैनर चिपकाया गया है।

दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति सफेद रंग की टोपी पहने हुए हैं और दूसरा व्यक्ति लाल रंग की।

इस चित्र मे कुछ घरे दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक महिला दिखाई दे रही है एवं एक टी_वी लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक घड़ी भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे टेबल दिखाई दे रहा है।

और यहां पे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एवं महिला भी--

ये साइड में डेकोरेशन किया गया है।

और यहां पे इमारत की खिड़की भी दिखाई दे रही है।

एवं यहां पर कुछ मूर्ति की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है।

और यहां पे त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है जिसमें एक डमरू लगा हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारे पुरुष महिला बच्चे और बच्चियांये दिखाई दे रही है।

एवं यहां पे बहुत सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे है जो की पिंक कलर एवं सफेद रंग की हैं।

इस चित्र में बहुत सारे बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है वाई_सी इलेक्ट्रिक व्हीकल ।

यहां पे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में कुछ घरें दिखाई दे रही है एवं यहां पे बहुत सारी टेंपो दिखाई दे रही है।

एक बैनर लगा हुआ है द रैम्बो जिम उस पे लिखा हुआ है।

और यहां पे कुछ मशीन दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बहुत सारे दीवाल में पेंट किए गए हैं।

और बहुत बड़ी बड़ी पत्थल एवं छोटी पत्थले भी दिखाई दे रही है।

और यहां पे कुछ पुरुष महिलाएं एवं बच्चे बच्चियाएं दिखाई दे रही हैं ।

इसके ऊपर में हेलमेट रखे हुए हैं।

केला के पत्ते भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे पेड़ एवं पौध दिखाई दे रहे है।